हताश तरह की तो फूल दिख ही जाएंगे हर एक स्टॉल में।

और प्लांट दिख रहा है मतलब एक ही टाइप का प्लांट लगाया हुआ है पूरा जो एरिया है।